इस पिक्चर में हमें एक बहुत ही बड़ा ग्राउंड दिखाई दे रहा है।

देखने में ऐसा लग रहा है।

और लाइटें बी लगी हुई दिखाई दे रहीं हैं।

और हमें लोगों की भीड़ भी नजर आ रही है।

देखने में ऐसा लग रहा है ये तीनों लड़की जिम में खड़ी हुई है।

इस पिक्चर पर हमे एक बहुत ही बड़ा ग्राउंड दिखाई दे रहा है।

रूम के बीच में हमें एक--

और ये कुछ खा रहा है।

इस ग्राउंड के बीच में एक नैट लगा हुआ दिखाई दे रहा है।

हमें यहां पर मोबाइल नंबर भी--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

इस पिक्चर पर हमें एक बहोत ही बड़ा मंदिर दिखाई दे रा है।

दिखाई दे रही हैं और भी बहुत सामान दिख रा है।